स्पीच दे रहे है और सामने एक लेडिस भी है जोकी बोल रही है और बाकी सब सुन रहे है।

देख पा रहे हैं यहाँ पर एक समुद्र है और समुद्र में लोग भी है इसके अलावा यहाँ पर --

सफ़ेद कलर की इस में बहुत गहरी सी नदी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये कहीं और की तरफ जा रही हो।

हम ये देख पा रहे है यह एक बस अड्डा है जहाँ पर श्यामली बदुली मुजर --

देख रहे है यह एक खुला मैदान है। आसपास हरे भरे पेड़ भी है खुला असमान है।

बिल्डिंग बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। पीछे के तरफ एक टावर भी लगा है। पेड़ भी सुंदर है।

देख पा रहे हैं। श्री राम कॉलेज हैं। जो की बहुत बड़ा हैं। वाइट कलर की बिल्डिंग हैं।

ऑरेंज कलर से है और आस-पास कई तरह की बाइक्स भी खड़ी है। हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। लोग भी दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं।

नया लग रहा है। झूमर भी लगाया गए हैं। यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा है। डेस्क में यहाँ पे आर्डर भी दिया जाता है।